दे रही है कुछ गाड़ीओ का कलर ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है और कुछ गाड़ीओ का वाइट कलर का भी दिखाई --

झंडा भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक कैलकुलेटर भी दिखाई दे रहा है यहां पर एक मैट भी दिखाई दे रही है।

मैज का कलर व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है।

यहां पर बहुत सारे झंडे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं यहां पर कुछ तारें भी दिखाई दे रहे हैं यहां पर ग्रिलें भी लगी हुई दिखाई दे रही हैं।

दिखाई दे रहा है यहां पर बहुत सारे पर्दे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर दो गाड़ी अभी खड़ी हुई दिखाई--

यहां पर एक बाइक भी खड़ी दिखाई दे रही है यहां पर एक ऑटो भी दिखाई दे रहा है ऑटो में गमला भी रखा हुआ दिखाइ--

रूम में बहुत सारा सामान में दिखाई दे रहा है।

और एक एल_इ_डी भी लगी हुई दिखाई दे रही है यहां पर एक सोफा भी रखा हुआ दिखाई--

और कुछ मैज भी रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

भी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है यहां पर ट्रक पर ट्रांसपोर्ट भी लिखा हुआ दिखाई--

दे रही है यहां पर एक पानी की बोतल भी रखी हुई दिखाई दे रही है।

यहां पर कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं यहां पर--

सामने एक कंपनी दिखाई दे रही है कंपनी में बहुत सारी मशीनें भी दिखाई दे रही है।

इस दीवार का कलर येलो कलर का दिखाई दे रहा है यहां पर कुछ गरील भी दिखाई दे रही हैं यहां पर एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है।